यहाँ पे एक बड़ा-सा लम्बा-सा बिल्डिंग ऐ कुछ प पाया जैसे दिख --

खड़े हैं सामने में एक ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे स्टेट बैंक ए.टी.एम. लिखा हुआ है | साइड में पाया पे भी एक रेड कलर का --

रखा हुआ जो क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है सामने में अठारह सौ लिखा हुआ है कुछ--